खेत के बाऐं तरफ मक्के का खेत भी दर्शाया गया है और खेत के दाऐं तरफ एक पेड़ भी दर्शाया गया है |

बहोत सारे घर भी दर्शाये गए हैं।

हाथोमें लो लिए प्रार्थना किये जा रहे हैं।

यह एक सड़क का दृश्य है।

इस झरने में बहोत सारे पर्यटक पानी में नहाते हुए दर्शाये गए हैं।

इन ऑटो रिक्शा के ऊपर एक रोशनी भी दर्शाइ गई है।

इस मैदान के बाएं तरफ एक छोटा-सा घर दर्शाया गया है।

इस घर के अंदर चार मोटरसाइकिल दर्शाई गई हैं।

तथा दूले के साथ एक और युवक भी दर्शया गया है।

झील के सामने बहोत सारे पेड़ दर्शाये गए हैं।

जिसमें बहोत सारे रंग-बिरंगे फूल दर्शाये गए हैं।